और ये गाड़ी खोल रखी है यहां पे कुर्सियां भी रखी है।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

यहां पे आप देख सकते हो ये डी_जे है और यहां पे लाइट कापर बंद किया गया है और यहां पे खंभे दिख रहे हैं।

और यहां पे ये आदमी खड़े हुए हैं इस आदमी ने नीले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और यहां पड़दे लगे हुए हैं।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

लाइट लगी हुई है यहां पे बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं ये यहां पे डम्बल रखे हुए हैं।